कुछ पीले और गुलाबी रंग के और कई सारी बाइकें बाहर खड़ी हुई है। एक बिल्डिंग भी है वहाँ उसे भी सजाया गया है।

कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं नारंगी रंग का कोट पहन कर। यहाँ हरे रंग का कोट पहनकर दो आदमी खड़े हुए है। एक में कुछ कैमरा सा लगा है एक के हाथ में किताब है सफेद रंग की और वहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर ये पादरी खड़ा हुआ है और कई सारे छे लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने सफेद पहना है और उन्होंने किताब हाथ में ली हुई है और वे सब किताब हाथ में लेकर खड़े हुए हैं।

टावर है जहाँ घड़ी लगाई गई हुई है और दुकानें भी है आइसक्रीम की और कई सारे लोग आ जा कर रहे है। ऊपर एक लाइट का खंभा है और कई सारे वायरे लगे हैं लाइट के खंबे में।

यह क्लास चल रहे है और यहा बच्चे लेट कर कराटे सिख रहे है थोड़ों ने कला रंग का बेल्ट लगा है थोड़ों ने पीले रंग का बेल्ट लगाया है इस क्लास यह सफेद रंग की है। कई सारे पोस्टर्स लगाए हुए है यहाँ --

ये जो चर्च हैं जो सफेद रंग का है और यहाँ ऊपर और नीचे क्रॉस लगाया हुआ है और वो लाल रंग का है और वहाँ बाजू में भी पर्दे से कुछ बनाया गया है।

वह काफी रात है नीचे कुछ हरी रंग की घास नजर आ रही है और मट मटकी मट मिट्टी से बनाए हुए कोई पोट है।

यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है नीले रंग का शर्ट पहन कर और उसने कुछ पकड़ा हुआ है एक नीले रंग की रस्सी-सी और यहाँ थोड़े पौधे भी हैं और यहाँ की जो जमीन है वो बैठा हुआ है और जो जमीन है--

वो उस के टाइल्स काड़े हुए हैं और जमीन थोड़ी खराब-सी है| टाइल्स वगेरह बोहोत कुछ वहां पत्थर वगेरह पड़े हुए हैं।

नारंगी रंग के फूल से सजाया हुआ है और मालाएं से और यहाँ कई सारे आदमी खड़े हुए हैं और उन्होंने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है और एक ने पीले रंग का पहना हुआ है| एक ने फोन लिया हुआ है अंदर से सफेद रंग का है।

गुलाबी नारंगी सफ़ेद फूलों से सजाया गया है ऊपर से सुनहरे रंग ऐसा कोई पैटर्न सा बनाया गया है| वहाँ पे एक आदमी खड़ा बैठ हुआ है नीले रंग का शर्ट पहनकर लाल कलर की कुर्सी पर|

नि और नीचे की तरफ ये है ब्राउन रंग के है और लाइन से बैठे है मछलियाँ बेच --

खरीदने के लिए अलग-अलग रंग के किताबे है और पहने भी है अलग-अलग रंग के और बड़ी लम्बी दुकान है ये।

एक दुकान है जो किताबो की दुकान है इसमे कई सारे किताबे रखी हुई है हरी पीले लाल अलग-अलग रंग के किताबे रखे गई हुई है।

चाय बनाकर यहाँ बेच रहे है यह जो है लाल रंग की है और चाय की पोस्टर लगाए गए है यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है ग्रे रंग का जैकेट पहन कर।

यहाँ एक बैंक का ए.टी.एम है और यहाँ जो बैंक है ए.टी.एम है सफ़ेद रंग का है ऊपर एक दुकान सी है वह नीले रंग की है और इस बैंक के ए.टी.एम के बाहर नारंगी रंग के फूलो की मालाएँ लगाए गई हुए है।

एक आदमी बाहर आ रहा है सफ़ेद रंग का शर्ट पहन कर और एक लड़का बाहर आ रहा है एक खड़ा है वहां गुलाबी रंग का शर्ट पहन कर--

ढेर सारे आदमी खड़े हैं वहाँ एक आदमी ब्राउन रंग का शर्ट पहन के खड़ा है एक पीले रंग का शर्ट पहनकर एक दुकान के अंदर खड़ा हुआ है| और ये एक बाजार है और यह शाम का वक्त है।

की दुकान है| यहाँ से किताबों की दुकान भी अंदर से सफेद रंग की है| कई सारी किताबें खड़ी अ है और यहाँ पर एक सीढ़ी भी है और एक काले रंग की कुर्सी भी है।

उधर से सफेद रंग का गुलाबी रंग का एक आदमी खड़ा हुआ है और वहाँ झण्डा लगाया गया हुआ है गांधी जी की भी तस्वीर है|

काले रंग का टी-शर्ट पहन कर और बाजू से स्टील की सीढ़ियां बनाई गई है और ऊपर हरे रंग का एक रूम - कमरा-सा है| उस तरफ पेंटिंग रखी गई हुई है और वो जो स्टैशनेरी की दुकान है वह थोड़ी नीचे से है।

दुकान है यह स्टैशनेरी की दुकान है जो काफी लंबी है कई सारी कितबे रखी गई हुई है अलग अलग पेन रखी हुई है और एक आदमी नारंगी शर्ट पहन कर वहा बैठा हुआ है।